ए चित्र ह एक ठा खेल के मैदान ए जिहा दिन के समय भी खेल होथे और रात के समय भी खेल होथे काबर की एमा बहुत बड़े बड़े लाइट लगी हुहे है ए लाइट हा मरकरी लाइट कहलाथे।

ए चित्र ह या तो सुबह के समय है या तो फिर शाम का समय है प्रतीत होथे थोड़ा शाम जैसे भी लगत हवे एम--

अभी के जो चित्र हैते हा एक ठा पोटर्री फार्म के चित्र सहित दिखत हे।